शोपीस प्लांट लगे हुए दिखाई दे रहा है । जिनमे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं ।

एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है। जिसमें शादी फंक्शन के लिए डेकोरेशन जारी --

और जो कि बारातियों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं । ये एक पैलेस के रॉयल पैलेस की शादी है ।

ट्रिमिंग करा रहे है और एक कैलेंडर जिसमे सरस्वती जी बनी हुई है ब्लू कलर के दिवार पे पेंट किया हुआ है।